बहुत ही पुराने जमाने में बनाया गया होगा इस मंदिर को--

इस आवट से बहुत ही ज्यादा अपने अंदर एनर्जी होती उत्पन्न होती हैं।

यह पेट्रोल पंप है इसमें सब लोग पूरा --

दूसरे जगह से मेडिसिन खरीदनी होती है।

यह पानी रोड के ऊपर है जो बहुत ही गलत है सरकार को इसके द्वारा ध्यान देना चाहिए ताकि इसको सुधारा जा सके --

चर्च है जो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है यह चर्च यह चर्च को चारों साइड से बहुत ही --

यह चर्च बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहा है इस लाइट के दौरान इस चर्च को और भी ज्यादा सुंदर दिखा रहा है।